इस फोटो मे भी एक मस्जिद दिखाई दे रही है यहा पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

बहुत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है हरी-हरी घास भी दिखाई दे रही है।